कुछ विंडोज दिखाइ पड़ रहे है पास में दो तीन पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं।

और कुछ पेड़ पौधे भी पास में दिखाई पड़ रहे यह रेड कलर की दिखाई पड़ रही है।

बीच में एक पिंक और ब्लू और स्काई ब्लू कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

नीचे की तरफ व्हाइट वाली टॉल लगी हुई है मैरून वाले परदे लगे हुए हैं।

ये आदमी अपने शोल्डर को उठाए हुए बॉडी दिखा रहा है।

यहां पे लोहे का जाल लगा हुआ है आसपास से रेलिंग बनी हुई है।

दो बोतलें काफी दूरी पे दिखाई पड़ रही है बहोत सारी लाइटे दिखाई पड़ रही है।

एक ए_टी_एम वाली मशीन है जिसके आगे एक स्लाइड वाला जीना लगा हुआ है।